गाड़ियां खड़ी है और एक गेट लगा हुआ है।

और बिल्डिंग व्हाइट कलर की है जो वो हॉस्पिटल है।

इस चित्र में बहोत बड़ा सा बेडरूम है बेडरूम के अंदर बड़ी बड़ी--

चित्र में एक बहुत बड़ा सा बुद्ध का मंदिर है जिसमें बहुत सारी मूर्तियां र--

बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और रीति--

दुकान है जिसमें छोटी छोटी मूर्ति रखी गई है छोटे छोटे गमले में गेंदा के फूल रखे गए हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा कोतवाली थाना का बिल्डिंग है जिसके--

इस चित्र में एक बहुत बड़ा एकेरियम का दुकान है जिसमें बहुत सारे लोग यहां पे बैठे हुए हैं नीचे टाइल्स लगी है जमीन में।

इस किनारे बहोत बड़ी-बड़ी रोड बनी हुई है और बहोत सारे लोग है उसमें चल रहे है।

और बहुत सारे लोगों की गाड़ी खड़ी हुई है।

और बहोत सारे लाइट लाइट लगी हुई है।

बहोत सारे बैंगल्स और लकड़ी के --

इस चित्र में एक बहोत बड़ा सा मैदान है जिसमें मस्जिद बनी हुई है।

इस चित्र मे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे बहोत बड़ा ग्राउंड बना हुआ है।

छोटे छोटे पौधे लगे गमले में।

और भी बाजू में एक मसाले की दुकान है उसके बर्नियों में भी मसाले दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा जंगल है जंगल में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र में बहोत बड़ा सा--

और गाड़ियां भी लगी हुई हैं।

और बड़ी बड़ी पेड़ दिखाई दे रही हैं।